ये हार्डवेयर का दोकान है यहाँ पंखा लगा हुआ है व्हाइट में।

शेर चल रहा है पता नही कहां जा रहा है।

बुल रेड कलर की कुर्सी है| काफी अच्छा नजारा ग्लास भी है।